और यहां पर गाड़ियां खड़ी है कुछ लोग खड़े हैं।

यहां पर दो गाड़ी खड़ी है।

एक हरा है हैं और यहां पर--

यहां पर एक फोटो है और--